नीम बहुत ही अच्छे लगते हैं काफी सूंदर हैं जो की बहुत ही अच्छा यहाँ पे देखने में लगते हैं और यहाँ पर ढ़ेर सारा यहाँ पे पड़े पौधे लगे हुए हैं। छोटे-छोटे जो की--

यहाँ पे देख सकते है तीन स्कार्पिओ है जो की बहुत ही अच्छा देखने में लगता है काफी सूंदर है यहाँ पे--

और यहाँ पे बहुत ही अच्छा देखने में लगता है और यहाँ पे रेलवे लाइन है बहुत ही अच्छे है और ये प्लेटफार्म --

यहाँ पे आप देख सकते है बहुत अच्छे से यहाँ पे सजाए हुए हैं जो कि देखने में बहुत ही अच्छे लगते है और यहाँ पे लिखे हुए है। एक सौ निन्यानवे जो कि देखने में बहुत ही अच्छे लगते है। काफी सुंदर है।

और यहाँ पे बहुत सारा मोटरसाइकिल है जो की सो डेढ़सौ दोसो से ऊपर होंगे देखने में बोहोत ही अच्छे लगते है काफी सुन्दर है और यहाँ पे ढेर सारे बैलून लटकाये हए है जो कि बहोत ही अच्छा दिखने में लगता है और यहाँ पे बहोत ही अच्छे से सजाई हुई है इस रूम को बहोत ही बढ़िया।